बहोत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे है।

और दो सफेद रंग की लाइट भी जल रही हैं।

बाहर में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है।

और बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं ये तोता देखने में बहोत ही सुंदर लग रहे हैं।

और यहां पे एक बच्चों की गाड़ी भी दो खड़ी है ये देखने मे बहोत ही सुंदर ली --

ट्रेन आ रही है एक दो आदमी खड़े हैं ट्रेन में लाल रंग की लाइट जल रही --

इस ऑफिस में बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं बहोत सारे चेयर और टेबल भी हैं।

यह नजारा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

इस दुकान में सब्जी और फल रखा हुआ है।

लाल रंग का है ऊपर में नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे एस_बी_आई लिखा हुआ है।

बहोत सारी लड़कियां और एक लड़का दिखाई दे रहा है जो की बैठ के अपना एग्जाम दे रहे हैं सामने एक --

और भी कार बाइक सब आ जा रही है।